सामने बहुत ही छोटे छोटे खुबसूरत से पक्षी है और यह सफ़ेद कलर के है।

और यहाँ पे दोड़ प्रतियोगिता हो रही है और ये बच्चे दोड़ रहे है सामने मैदान में काफी सारी हरी घास लगी हुई है।

सूर्य की रौशनी दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक नाव खड़ीं हुई है नाव के ऊपर दो लोग खड़े हुए है जो अपने हाथो को --

बेच रहे है यहाँ पे एक बोरी पड़ी हुई है एक नीले कलर की पन्नियों में कुछ रखा हुआ है जो सफ़ेद कलर का है।

यहाँ पर लकड़ियों का बनाया हुआ सामान है और यहाँ पे डमरू रखा हुआ है सामने दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है।

यहाँ एक वाटर पार्क है और वाटर पार्क में पानी बहुत जादा नीला दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा है।